कोई बाइक से कर जाट बडन। कुल आदमी न आदमी न लौकत दोनो साइड दुकानो बा।

कुल गिटार -उटार फिर पियानो फिर तबला-ओबला फिर बैंड -वैंड जो भी होवेला सब कुल लउकत बा। इंस्ट्रूमेंट कुल जगह लउकत ह।

के पीछे दीवाल सफेद रंग के ह।

फिर और भी कुली पेड़ लगल बा हरियर हरियर फिर गमला ओमला भी लउकता बा लाइन सेऔर कुल लड़की ओरकिन भी कुल लइकिन लउकत हैइ दुगो --

फिर ओकरे पीछे एक ठो अ टॉवर बा जेमर लाइट वाइट जलत ह बड़ा नीक सुन्दर लगत बा।